और यहां पर रात हो रही है।

और यहां पर पेड़ पौधे भी दिख रहे हैं।

है और यहां पर मंदिर का गेट बंद है।

बाहर रेता पड़ा हुआ है।

और यहां पर लाइटें भी लगी हुई है और कुर्सी भी धरी है।

यहां पर बहुत सारे बच्चे पी_टी कर रहे हैं यहां पर टाइल भी लगी हुई है और यहां पर लाइटें भी लगी हुई है।

यहां पर हमें ये क्लास दिख रही है।--

यहां में बहोत सारे आदमी बैठे हुए हैं।

और यहां पर पंखे भी चल रहे हैं।

यहां पर हमें ये एक ट्रैक दिखाई दे रहा है जिसमें बहुत सारे रेसर आगे खड़े हुए हैं जोकि रेस मार रहे हैं और इनके बैग भी यहां पर धरे हुए हैं।

और यहां पर बिल्डिंग भी नजर आ रही है।

इसमें बहोत सारी कोल्ड ड्रिंक धारी हुई है।

सामने हमें यहां पर एक डी_जे भी दिख रहा है।

और यहां पर मैट भी बिछे हुए हैं और यहां पर डस्टबिन भी लगी हुई है।

यहां पर एक साधु इनकी तस्वीर भगवान जी की पूजा कर रहा है।

और बहोत सारी मशीने धरी हुई है और यहां पर बलफ़ भी लगा हुआ है और कुर्सी भी धरी हुई है।

और यहां पर बहुत सारी मशीनें भी धरी हुई है तौलिए भी धरे हुए है।

और यहां पर के सामने भी एक दुकान दिखाई दे रही है।

और यहां पर शीशे भी लगे हुए--

और बहुत से बच्चे यहां पर खड़े भी है।

और एक और यहां पर मूर्ति धरी हुई है पीछे।

और यहां पर बहोत सारे बच्चे बैठे हुए हैं।

और यहां पर पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

यहां पर बहोत सारे डी_जे धरे हुए हैं।

और आदमी भी यहां पर फिर रहे हैं।

और अन्दर भी बहुत सारा सामान धारा हुआ है।

यहां पर हमें ये एक गार्डन दिख रहा है औ--